दो लड़ एक लड़का कुर्सी पर बैठकर शैप बनवा रहा है और वो नीले कलर का उसका टावेल लगा हुआ हैं और एक बना रहा हैं।

के अंदर कुछ लोग जाते हुए नजर आ रहे है

सामने मुझे एक नदी दिखाई दे रही है। और एक डूबता हुवा सूरज नजर आ रहा है।

आगे एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे एक बस दिख रही है जो उसमे कुछ लोग सवार है कुछ लोग चढ़ रहे है।

सामने मुझे एक स्विम्मिंग पूल नजर आ रहा हे।

और सफ़ेद लाइट जलती नजर आ रही हैं।

जिसमें ऑरेंज कलर हरे कलर के गुब्बारे नज़र आ रहें हें ।

और साइड से एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही थी।